बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं नेट में।

और तिरंगा के जैसा पैंटिंग किया गया है। कुर्सी है कुर्सी पर पानी है उधर चाय का दुकान है और इधर लोग खड़े है दो लोग खड़े है और एक बैठे हुए है।

और ये टोकरी है। टोकरी में बहुत तराजू है मार्केट में जा सकता है कही जा सकता है।

अं आदमी भी है एक दो ठो।